काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे ए ऊचे-ऊचे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और एक आदमी खड़ा नज़र आ रहा है।

कुछ दरवाज़े नज़र आ रहे हैं तिन कुर्सियाँ नज़र आ रही है जिनका कलर --

सामग्री नजर आ रही है बगल में ही एक इंसान खड़ा नजर आ रहा है जिसने वाइट कलर का शर्ट और क्रीम कलर की पैंट पहनी हुई है।

इसके इर्द गिर्द काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

काफी सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे ए कुछ छोटे पौधे भी नज़र आ रहे हैं ।

और एक ऊची ईमारत भी दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं कुछ गमले नजर आ रहे हैं हरा भरा--

यह एक काफी बड़ा तालाब नज़र आ रहा है जिसमें काफी सारे--

या पेड़ है इस नदी के अन्दर ही दिखाई देरे है।

मारद जैसा नज़र आ रहा है उसके अगल बगल में काफी सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं।

यह एक कमरा दिखाई दे रहा है जिस कमरे में--

एक इमारत भी दिखाई दे रही है कुछ खेलने कूदने की चीजें भी नजर आ रही है रेड कलर की चेयर्स भी दिखाई दे रही है।

देबर भी दिखाई दे रहा है इसमें कुछ पूजा का सामान दिखाई दे रहा है जिसमें अगरबत्तियां फूल की सामग्री दिखाई --

एक ब्राउन और एक ब्लू कलर का सोफा दिखाई दे रहा है।

नीला दिखाई दे रहा है पीछे काफी सारी सजावट की चीजे नज़र आ रई है।

यहाँ एक खेत जेसा कुछ नज़र आ रहा है जिसमें--

हिन ये बूट्टेक का हरा हरा रंग नज़र आ रहा है आस पास--

यह एक बड़ा सा आँगन दिखाई दे रहा है जिसमें पेड़ो का समावेश है।

यहा एक काफी बड़ा भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है।

जिसके पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और सामने भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

वही नज़र आ रही है कुछ चिवड़ा नज़र आ रहे हैं कुछ --

चीजें बनाई गई है जो मिट्टी के जैसे दिखाई दे रही है इसमें कुछ--

यहं एक काफी बडा होटल का कमरा नजर आ रहा है जिसमें काफी बड़ा बेड नजर आ रहा है उसी के उपर --

आसमान खुला खुला नज़र आ रहा है जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है।

बादलो का समावेश भी है काफी बड़ी इमारत है।

जो बन दिखाई देरहा है उसी के पास में एक काफी बोर्ड --

यहा एक हॉस्पिटल जेसा नज़र आ रहा है जिसका कलर --

या एक काफी बड़ी इमारत दिखाई दे रही है जिसका कलर सफेद नज़र आ रहा है।

एक बहोत बड़ा ट्रक नजर आ रहा है जिसका कलर --

इसमें एक ही कार का समावेश दिखाई देरा है ये काफी बड़े काल काले कलर की--

उसी के बगल में कुछ व्हील भी नज़र आ रहे है इसी का समावेश है कुछ लाइटे लगी हैं।

काफी बड़ा गेट नज़र आ रहा है सफेद कलर का गेट नज़र आ रहा है।

एक आदमी खड़ा है और एक आदमी बैठा हुआ है और एक बाइक --

या एक डाकघर नज़र आरा है जो--

कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे है।

या एक काफी बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे एक--

पेड़ पोधे लाइटिंगस दिखाई दे रही है।

यह एक काफी बड़ा गुरुद्वारा नज़र आ रहा है जिसमें कुछ लोग नज़र आ रहे हैं।

काफी सारी घंटीयों का समावेस दिखाई दे रहा है।

यह एक जू दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

कुछ जानवर दिखाई दे रहे ए कुछ हीरन दिखाई दे रहे हैं।

उसके पीछे कुछ पहाड़ी जेर्सा दिखाई नज़र आ रहा है।

इसमें काफी सारे लोग नीचे बरांडे में बैठे नजर आ रहे हैं।

दो कारे खड़ी नज़र आ रही है एक स्कूटी खड़ी नज़र आ रही है।

या काफी बड़ी इमारत दिखाई दे रही है उसी के जस्ट बगल में--

एक सफेद करके काफी बड़ा पिंडोल दिखाई दे रहा है।

कुछ इमारत के कॉलम्ज़ भी नज़र आ रहे है।

अच्छा सजावट का माहौल दिखाई दे रहा है।

कुछ लाल दिखाई दे रहे हैं कुछ रेड बो--

और चेयर्स नजर आ रही है काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है।

एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है और इसमें एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर --

दरार लगे दिखाई दे रए है और एक बैंक भी नज़र आ रहा है।

पत्थरों का कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और इसमें एक कार भी नज़र आ रही है दो कलर की कार नज़र आ रही है।

यह एक काफी बड़ा गार्डन दिखाई दे रा है जिसमें खेलने खुदने की --

नज़र आ रए है एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी जाते हुए दिखाई दे रहा है और एक--

पेसे निकालते हुए दिखाई दे रहा है उस ए_टी_एम में--

दिखाई देरे है जिसमे काफी सारे लोग--

का नजारा जो है पहाड़ी जैसा दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक डेडिनेट्स की दुकान दिखाई दे रहे है जिसमे काफी सारे--

आसपास में पत्थर होगा काफी ज़्यादा।

लाती हुई काफी बड़ी ईमारत दिखाई दे रहे है जिसमें--